उस रिक्शा का रंग पीला और हरा दिखाई दे रहा है पास में रोड पे सफेद लाइन जाती हुई दिख रही है पास मन डिवाइडर दिख रहा है जो सफेद काले रंग से घुटा हुआ है।

इस चित्र के अंदर एक हमे एक कछुआ दिखाई दे रहा है कछुआ ऊपर साईड से काला और नीचे से पीला दिखाई दे रहा है।

इसके नीचे कुछ दुकानें दिखाई दे रही है सामने से रोड जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी डिवाइडर पीले और काले रंग का दिख रहा है आसमान नीले रंग --

इसके अंदर हमे मैदान दिखाई दे रहा है मैदान हरा भरा दिखाई दे रहा है और कुछ जगह मैदान में मिटी दिखाई दे रही है।

अन्दर हमें एक दुकान दिखाई दे रहीं हैं दुकान के अन्दर बहुत सारे कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं।